कुछ गेट सा बना हुआ है उसके ऊपर वाइट कलर है।

यहाँ पर झूला भी लगा हुआ है और साइड में बाउंड्री भी की हुई है जो वाइट और आसमानी कलर की है और यहाँ पर कुछ खम्बे भी लगे है।

और यहाँ दुकान के ऊपर लइते भी लगी हुई है झालर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हुए है।

यहाँ पर कुछ बसे खड़ी हुई है जो ग्रीन कलर की है उसमे रेड कलर की पट्टी है विंडोज है एक आदमी एक बैग लि